सामने की तरफ की हमे एक होटल दिखाई दे रहा है जिस का नाम है होटल रेलसो और ये काफी बड़िया होटल दिख रहा है सामने से और इसका पेंट हुआ है।

ग्रीन कलर से पिंक कलर से येलो कलर से व्हाइट कलर से जोकि देखने मे बहोत ही शानदार दिखाई दे रहा है और सामने की तरफ तीन-चार बाइक लगी है।

रोड के उस पार हमे दिखाई दे रहा है कि एक हुंडई एजेंसी है ओर एक होंडा का एजेंसी है और वहा पे दो कार लगे हुए है हुंडई की एजेंसी के पास एक रेड कलर के है एक व्हाइट कलर के --

ये बहोत बढ़िया दृश्य है। हॉस्पिटल भी बढ़ियां है येलो कलर का है।

सामने की तरफ हमे दिखाई दे रहा हे की बहोत बड़ा फील्ड हे जहाँ पे बहोत सारे लोग आ कर एकसेरसाइज़ कर रहे हें और ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हे।